इ देखे में लागता इ पहाड इ समुद्र बहुत अच्छा झरना लागता हमरा | हमहू जाएम त एही में नहाएम घुमम फोटो घीचम बहुत अच्छा लागी हमर --

इ एगो मदिर बा | इ मदिर बहुत अच्छा लागता इ मंदिर में रात के फोटो बा | इ इ गेट नंबर फोर बा मंदिर के रास्ता जाए वाला |